और एक और इने बोर्ड लाग रा ए.सी. लाग री है और --

बाल्टी तीन आदमी खड्या है और कचरा सा --

यहां पिल्लर है चार बोतल पड़े है और दिये है पाईप है कसी है।

चमची है प्याली है और दाल है और इसमे एक सब्जी और है इनने मिक्स सब्जी है चावल है।

इन्न एक आदमी थैला म स समान काड रहया है इन्न बैठना की कुर्सियाँ है बड़ी बड़ी पिलर है इन्न बस खड़ी है और इन्न कुर्सी और है इन्न आदमी बोलै सारा आदमी खड़िया है और एक लुगाई थैला ले रखी है थैला --

पत्थर पड़िया है एक छोरी और है बादल है और इनने एक छोरी और है।